बगल में एक फोन पे का स्कैनर चिपका हुआ दिख रहा है।

ऊपर लाइट जल रही है।

फूल से सजा हुआ दिख रहा है।

यह फोटो एक दुकान का है।

इस फोटो में रैख से बहोत सारे सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में दो आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं।

और रैक भी नजर आ रहे हैं।

सामने दो डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

टायर रस्सी से बंधे हुए दिख रहे हैं।

वो बगल में एक घ दुकान भी दिख रहा है।

इस फोटो में पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

एक आदमी कार को ठीक करते हुए दिख रहा है।

एक चेयर भी दिख रहा है।

एक आदमी ब बोर्ड पे कुछ लिखता हुआ दिख रहा है बोर्ड का कलर ब्लैक और वाइट है।

ग्रीन कलर का और गुलाबी कलर के मैट लगे हुए दिख रहे हैं।

बगल में बोतल रखे हुए दिख रहे हैं।

बगल में पानी का एक जार रखा हुआ है।

पीछे तीन रूम नजर आ रहे हैं।

रूम में कुछ सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में दो दुकान दिख रहे हैं।

ऊपर डब छोटे छोटे डब्बे हैं।

बगल में एक पत्थर भी दिख रहा है।

इस फोटो में हॉल दिख रहा है।

झूलते हुए नजर आ रहे हैं।

घर पे बहोत सारे डिजाइन बने हुए हैं।

और उसपे छोटे छोटे बोतल डब्बे और कुछ सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

पीछे दीवार नजर आ रहा है।

ईट भी दिख रहा है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का है इस फोटो में तीन टेबल लगे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा है।

जिस पे जी ट्वेंटी नाइन फाइव नाइन लिखे हुए हैं।

इस फोटो में एक लड़का दिख रहा है लड़के ने ब्लैक कलर का बैग टांगा है।

ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।